काफी बड़ा दुकान है और डिस्काउंट है।

यहाँ पे काफी चट्टानो को काट के--

आते जाते इन्सान अंदर ना जा सके।

और ये मिट्टी का हाथी बनाया हुआ है और काफी--

और चारो ओर बल्ब और छोटा-छोटा पोधा लगाया हुआ है यहाँ पे छत--

और काफी प्यारा अलग से सजावटे किया आप देख सकते है और सोने का मूर्ति--

बाल कटवा रहा है और यहाँ पे चारो ओर से डिजाईनिस --

ये जंगल काफी ही बड़ा जंगल है और देखते सकते है चारो ओर से--